उसको सड़क भी कच्ची दिखाई पड़ रही है आसमान सब भी अच्छे से दिखाई दे रहा है और सीढ़ी भी बना हुआ है उस के किनारे में--

यहाँ पे एक योगा की कक्षा चल रही है जोकी बहुत से बच्चे निचे में लेट कर अपने व्यायाम सब कर रहे है।

और एक बच्चा ऊपर की ओर देख रहा है उसके किनारे में कुछ शीशा लगा है जिसका प्रतिबिम्ब इस बच्चे लोगो का उस शीशा में दिख रहा--

यह एक बजार नज़र आ रहा है जिसके नीचे में बहोत सारे लोग बैठे हुए है और बहोत लोग खड़े हुए है जिसके ऊपर में ग्राहक सेवा केंद्र लिखाया हुआ है।

जिनके किनारे में बहोत से घास सब भी उगे हुए दिखाई दे रहे है और पेड़ सब भी बहोत दिख रहे है फूल सब भी खिले नज़र आ रहे है।

सब योगा कर रहे है जैसे दिखाई दे रहे है और सब दोनों हाथ को नमस्ते कर रहे है।

यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाया जारहा है जो बहुत सा करने वाले लोग खड़े है और कुछ लोग निचे बैठे हुए है और छड़ सब को बांध रहे है।

यह एक सड़क है जो की सड़क के किनारे में एक इंसान चल रहा है और एक इंसान बाइक पे है और बैग को पकड़ा हुआ है।

यहाँ पे किसी घोड़े और एक सिपाही का मूर्ति बनाया हुआ है।

जिनका रंग पीला और लाल है उसके पीछे में कुछ बड़ी-बड़ी इमारते भी है।

यह एक छोटा-सा चर्च है जिसके ऊपर में पेंटी कोस्टल चर्च बरटोली चांदो लिखाया हुआ है।

और एक जगह चप्पल भी फेकाया हुआ नज़र आ रहा बोरा सब एक जगह है।